इस चित्र में सामने ही एक फ्रिज रखा है कोको कोला कंपनी का और दो तीन आदमी यहां पर खड़े दिखाई दे रहे है दो आदमी बैठे हुए है।

शासकीय स्नातकर्मा विद्यालय जगदलपुर कुछ ऐसा टाइप लिखा हुआ है।

और नीचे कुछ बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं कॉर्नर में।

कुछ बैठने की सीटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में सामने हमें काफी सारे टेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और लीची लगी हुई दिखाई दे रही है वह सामने ही टेबल पर काफी सारे प्लेट्स रखी हुई दिखाई दे रही है।

और पीछे में एक दरवाजा दिखाई दे रहा है नीचे पत्थर बिछा दिखाई दे रहा है एक खिड़की लगी हुई है और पीछे कुछ पेड़ भी लगा है।

और नीचे कुछ शटर भी है उस साइड मे एक गेट लगा है इस स्कूल पर चारों तरफ लीची लगी हुई है।